ये पेट्रोल पम्प है। जाती हैं अगर रस्ते में हमारी गाड़ी बंद हो जाती है तो फिर हम कैसे जाएंगे तो इसलिए जगह-जगह पे कहीं-कहीं --

ये गौतम बुद्ध का स्टेचू है जोकि कहां बना है मुझे पता नहीं है।

जिम ये सब लोग वर्क कर रहे हैं जिम में। हममम सब लोग वर्क कर रहे हैं जिम में।

ये स्कूल है| जो की बच्चे आए हैं यहाँ पर सबकी साइकिल वगैरह रक्खी हुई हैं| यह लोग जो खड़े हैं कुछ देख रहे हैं जो अभी खड़े हैं और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है एक स्कूल है ये ।

हम्म्म यह है शॉप जिस पर सब कुछ मिलता है कुरकुरे दिख रहा है एक चॉकलेट वाह इस्पे तो फोनपे भी चलता है।

चला के देखता है और वह एक वो है ना काश वो --

क्या मालूम कैसी-कैसी बनाई लगता है कुछ यहाँ पे बन रहा है।

ये तो नरमदा जी हैं उसके पुल पे से खड़े होके ये पिक ली है।